और हरे-हरे बहुत सारे पौधे लगे हैं।

ये एक डांडिकरण रोड है रोड पे दो भैंसिया जा रही है भैंसिया--

ये ये एक फैक्ट्री है और यहाँ लोग काम कर रहे हैं--

पसंद आता है व अपने के लिए पसंद का--

यहां एक बहोत बड़ा बहोत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड में बहुत बड़ा हरा हरा घास है और वहां पे नेट लगा हुआ है।

किराना सामान लेने के लिए बाहर से लोग आते हैं और।